यहां पर मुझे एक--

पर वाइट कलर के डोर्स लगे हुए हैं।

पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर--

यहां पर मुझे एक एरिया नजर--

पर मुझे एक एरिया दिखाई दे रहा--

आस पास यहां पे बहोत बड़े बड़े घर भी हैं।

ब्लैंकेट और एक रजाई दिख रही है और--

खिड़की में पर्दे भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक ब्लू कलर की--

पर मुझे एक कमरा दिख रहा है।

लगा हुआ है और यहां स्वीट्स भी है।

पर एक लड़की भी चल रही है।

पर मुझे एक हॉल दिख रहा है।

यहाँ पर एक इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ--

पर मुझे एक माउंटेन्स दिख रहा है यहाँ पर--

पर मुझे एक हॉल दिख रहा है जहां--

बहुत बड़ा रेस्टोरेंट देख रहा--

पर मुझे बहुत ज्यादा एरिया दिख रहा है।

मेकअप्स की चीजें रखी हुई हैं।